जिसे सब लोग एक साइड से ढलाईया करते हुए आ रहें हैं जिसमें छह मजदुर हैं।

मूर्ति का हाइट छोटा लग रहा है |

और यह शिव मंदिर है।

यह एक रेस्टोरेंट है जो काफी फूल-पत्ती से सजा हुआ है और यहाँ पे बॉल भी लगा हुआ है।